इस चित्र में दिन का मौसम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये बहोत सारा चेयर लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा हरा भरा पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

और यहां पर ये दो पुरुष काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ही एक काला कलर का वेंटिलेटर बा--

और यहां पर एक तीन पुरुष बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही बहुत सारा बत्ती जलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही दो पुरुष चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक केक का दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रैक में बहुत सारा कपड़ा सब भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक महिला काउंटर का सामने खड़े हुए भी नजर आ रहे--

और यहां परी बहुत किसीम का बाजा बजाने वाला समान सब दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक योगा का क्लास दिखाई दे रहा--

यहां पर ही बहुत सारा बत्ती जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पंखा भी नजर आ रहा है।

और यहां पे बहुत सारे हरे भरे गांछ भी दिखाई दे--

यहां का टाइल्स का कलर व्हाइट और ऑरेंज रंग में नजर आ रहा है।

यहां पर एक पुरुष खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये टेबल और कुर्सी सब दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही बहुत सारे हरे भरे लंबे लंबे जंगल का घास नजर आ रहा है।

और यहां पर ही एक महिला और बच्चे फोटो खींचाते हुए नजर जा रहे हैं।

यहां पर ही बहोत सारा लाइट जलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है ।

यहां पर एक पल्स कॉलेज भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ही बहुत सारा गाड़ी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है।